दिखाई दे रही है लेडीज --

मूर्ति रखी हुई है --

आदमी है जिसने लाल कलर की शर्ट --

जगह बहुत हीअच्छा है और मजेदार भी है और ये यहाँ पे लोग हटे हुए है। जगह बहुत ही अच्छी है फोटो बहोत ही अच्छे आ रहे है --

बहुत ही अच्छी जगह भी दिखाईं दे रही है। अब तो हवा बहुत ही मजेदार है और अच्छी भी है और यहाँ पे भी रखी हुई है यहाँ पर बहुत ही अच्छी सफाई --

हाए रे पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे। यहाँ पे पानी भरा हुआ है। पीछे दिखाई दे रहे है।